नीचे कुछ काउंटर लगे हैं लाल रंग के जिन पर खाने रखें हैं। सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ हैं लाइट है।

कुछ स्टेज में सामने फूल लगे हैं ऊपर पंखे हैं सफ़ेद रंग के।

एक बड़ा सा मॉल है मॉल में ढेर सरे बिस्कुट व अन्य समन रखे हुए है।

लाइट है कलि रंग की एक काउंटर है काउंटर पे लैपटॉप रखे हुए है कैमरे लगे है पिलर में फरते है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग है बिल्डिंग पे एक काले रंग बोर्ड है बिल्डिंग के ऊपर कुछ उर्दू में लिखा हुआ है निचे एक पाइप लगी हुई है एक आदमी का सर है।